और इस लेंटर के ऊपर कई सारे मजदूर वगैरा काम कर रहे हैं और इस मजदूर इस मकान के ऊपर कई सारे मजदूर सीमेंट वगैरा ठीक से बिछा रहे हैं।

कि इदर कुछ हो रहा है और इदर कुछ आग जल किसी पे आग जला रहे है और यह लोग कई च कई आपस में कुच --

बदक कई सारी बदक पानी में टहल लाये है और --